इस फोटो मे एक इटो से बना मकान दिखाई दे रहा है मकान मे बडा सा दरवाजा लगा हुआ है।

वह एक फैक्ट्री कि तस्वीर नजर आ रही है देखने मे यह लगता है कि यह एक कपडे कि फैक्ट्री है।

ये सारी कपड़ो की दुकाने दिखाई दे रही है।

ऊपर सिल्वर गोल्ड डायमंड लिखा हुआ है।